ये पहाड़ों से आकर पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है।

सफ़ेद रंग का है यह |

यह बेंच के चारों कोणों पे लगा रखी है बेंच बहुत बढ़िया यहाँ पर कारें हैं।

आराम से चलते हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये बहुत ही शुभ है।

एक रियलमी एट प्रो एक सौ आठ मेगापिक्सल द्वारा खींची गई है।

काम्प्लेक्स की है जहाँ पर हमरे सामने एक बड़ी सारी बिल्डिंग नजर आ रही है।

पिलर लगे हुए हैं ये पिलर इसकी है।

जहाँ पर पारक के चार दीवारी तक रखी है।

इस दीवार पर अनेक प्रकार की चित्रकला की गई है।

बीज मार कर छोड़ रखे है ये बोनी की स्थिति में या खेत अभी खाली है खेत के अंदर एक --

यह एक शादी के मंडप का दृश्य है जहाँ पर साउथ साइड में शादी हो रही है।